ये एक ऑफिस है इस ऑफिस मे बहुत सारे अलग - अलग केबिन है इन केबिन में बहुत सारे लोग बैठे --

यहाँ पर सी. सी. टीवी कैमरा लग हुए है यहाँ पर एक लकड़ा बैठा है इस कानो मे ईरफ़ोन लगे हुए है।

काले बहोत रंगो के कपड़े रखे हुए है यहाँ पर एक जंगला लगा हुआ है।

यहाँ पर एक आदमी पल्ले पर बैठा है कुछ लोग बैठे हुए है यहाँ पर आस-पास बहोत साड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पर बहोत बड़े - बड़े--

यह एक गाड़ी का शोरूम है यहाँ पर बहुत सारे केटीएम गाड़ियां रखी हुई है ये गाड़ियां ऑरेंज सफ़ेद रंग की है यहाँ पर --

ये कोई ऑफिस है एक ऑफिस में बहुत सारे अलग - अलग कैबिन है यहाँ पर दो बड़े - बड़े मैप बने हुए है